इस फोटो में बहुत सारी जलेबियां हैं।

जलेबिया स्टील की प्लेट पर रखी हुई है।

एक काले रंग का हुक्का रखा हुआ है।

एक व्यक्ति ने लीले कलर का कपड़े पहने हुए है।

एक पोस्टर पर सैमसंग गैलेक्सी एस नाइन लिखा हुआ है।

एक काले रंग की कुर्सी है।

लाल रंग के परदे लगे हुए हैं।

पिले रंग के पर्दे भी लगे हुए हैं।

एक काले रंग की कुर्सी है।

पीछे बहुत सारा सामान धरा हुआ है बहुत सारे बॉक्स हैं।

नीले कलर के ड्रोवर्स बने हुए हैं।

इस फोटो में बहुत सारा रेत है।

एक व्यक्ति ने पीले कलर की जॉकट पहेरि हुई है।

एक व्यक्ति ने गुलाबी रंग की जैकेट पहरी हुई है।

एक सफेद और नीले रंग की बस है।

एक सफेद रंग का बोर्ड है।

एक लोहे का खंबा लगा हुआ है।

सीढी पर एक व्यक्ति खड़ा है।

पीले शब्द में सर्विस स्पेयर पार्ट्स लिखा हुआ है।

एक काले कपड़ों में एक व्यक्ति है।

बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

पीछे बहुत सारे पेड़ हैं।

एक लोहे का खंभा लगा हुआ है।

दो व्यक्ति ने सफेद रंग के कुर्ते पहेरे हुए हैं।

बोर्ड पर स्वागतम लिखा हुआ है।

वेलकम्स यू भी लिखा हुआ है।

एक कुमार नाम का बोर्ड लगा हुआ है।

इस फोटो में बहुत सारे बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं।

उपर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

बोर्ड पर ब्राउन रंग का स्विच है।

यह एक मॉल का फोटो है।